ये महावीर महाराज की मूर्ति है जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं इनके इनकी आंखें बंद है तथा इनका कलर जो उन्होंने--

-- अंदर में बहोत सारे पेड़ लगे हुए है जहाँ पर केला का पेड़ भी लगा हुआ है।